पीछे का रंग नारंगी और हरा है।

एक व्यक्ति पूजा करते हुआ नजर आ रहा है।

और कुछ बड़ी खिड़कियाँ नजर आ रही हैं।

यहां एक्सरसाइज करने के लिए बहोत सी चीजें लगी हुई है।

यहां पर हम सामने एक बड़ी सी नर्सरी देख रहे हैं।

सामने पीले रंग की शेड बनी हुई है।

साथ ही कुछ लोग भी यहां नज़र आ रहे हैं।

यहां हम सामने एक खिलौने की दुकान--

यहां हम सामने एक बड़ा सा परिसर देख रहे हैं।

जिस पर बहोत ही सुंदर पौधे उगे हैं कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

स्टेज का डेकोरेशन बहोत ही सुन्दर है।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

जिसके ऊपर आरती बुक सेंटर लिखा हुआ है।

कुछ कार्टून भी पड़े नजर आ रहे हैं।

सामने पानी के कुछ डिब्बे रखें हुए हैं।

जिनके बीच में से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।

साथ ही हमें सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

जिसपर सीधी सीधी कुछ बड़ी पेड़े नजर आ रही हैं पेड़ के नीचे--

और भी अन्य खिलौने नजर आ रहे हैं।